और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी के आगे नोटबुक्स पड़ी हुई है।

आदमी बैठा हुआ है जिसके व्हाइट कलर की शल्ट पहनी हुई है।

यह एक डॉक्टर का क्लीनिक है जिसमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं और इसके--

और एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं।

यह एक मैंदान है जिसमें मैदान में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं इधर दो ऑटो भी खड़े--

उनके ऊपर मैट बिछा हुआ है जो स्किन कलर का है और बहोत सारी चेयर लगी हुई हैं।

जिसका कलर व्हाइट है और उसके ऊपर एक--

और एक लड़का पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है।

जहां बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

लोग खड़े हैं और अंदर सामान है।

डेक्स लगा हुआ है जहां बहुत सारी फाइलें लगी हुई है और बैठने के लिए चेयर है।

और सामने एक लेडिस जा रही है।

कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ व्यक्ति खड़े और होय हुए हैं और जो बातें कर रहे हैं यहां बहोत रोशनी है और बहोत सुंदर लग रहा --

ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति जहां खड़ा है जिसने ब्राउन कलर के शूज डाल रखे हैं।

बैठे हुए है जिनके हाथों में तिरंगा है।